यह एक ब्रिज का बहुत ही सुन्दर नजारा है जहा से दृश्य एकदम मनोरम दिखाई दे रहा है एक ब्रिज बना हुआ है जिसके आगे कुछ पानी इकट्ठा हो रखा है।

जहा पर कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और ताक रही हैं।